यह देखने में रात का सीन लग रहा बाजू में टंकी दिख रही ग्रीन कलर के पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं मैदान दिखाई दे रहा हैं इसमें घास उगी हुई है।

जो ग्रीन कलर का हैं यहाँ पर बहोत सारी लेडिज और जैंट्स खड़े हुए हैं।

यहाँ सामने एक शटर लगी हुई है बाजू में चैनल गेट है जो ब्लैक कलर का है शटर लोहे की है।